यहां पर मुझे फूलों की सजावट दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक आइसक्रीम पार्लर दिखाइ दे रहा है।

यहां पर मुझे बहोत सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक रेस्ट्रों दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे बहोत सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं।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

यहाँ पर मुझे एक शटर दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर मुझे एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे कई ऑटो दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहोत सारे जूते दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक मेडिकल स्टोर दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे एक डेयरी फार्म दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे सड़क दिखाई दे रही है यहां पर मुझे एक होटल दिखाई दे रहा है।